उम देख रहे हैं उधर साइड में फिर पेड़ पौधे हैं बहुत अच्छा द्रश्य है उम इधर पूरा गार्डन गार्डन है।

पूरा छत का कलर किया है बोहोत अच्छा कलर है साइड टू साइड बॉउंड्री है हरी बड़ी है देखने मे अच्छा लग रहा है।

यहाँ हम देख रहे हैं एक चाय की दुकान है जिसमें लिखा हैं रोहन चाय सेंटर चाय कॉफी इसके अंदर देखते हैं बहार मे दो ग्राहक हैं।

जो फोटो लिया गया है वो बहुत ही अच्छा है आप लोग ऐसा मत कीजिये आराम से देखिये साइड-साइड बिल्डिंग है उसके बाद एक बिजली के टावर की है वो बहुत अच्छा है देखिए----

एक लड़का जिम कर रहा है अच्छे से जिम बॉडी बना रहा है ये सब आए है जिम करने एक लड़का देख रहा है नीचे मे लाल कलर की सलमाइका लगी हुई है बहुत अच्छा है।